और नीले रंग के ड्रेस पहनी हुई नजर आ रही है और एक गमछा भी दिखाई दे रहा है।

सामने दो पिलर दिखाई दे रहे हैं जो कि नीले रंग के हैं ऊपर की सीलिंग सफेद रंग की नजर आ रही है।

जैसा कि देख पा रहे हैं तस्वीर में कई आदमी बैठे हुए नजर आ रहे हैं जो कि पूजा की सामग्री--

एक सामने देख पा रहे हैं कि सफेद रंग की ए_सी भी लगी हुई नजर आ रही है एक शीशा नजर आ रहा है।

जैसा कि देख पा रहे है ये तस्वीर में एक दरवाजा दिख रहा है जो की--

और बोहोत सारे पंखे भी नजर आ रहे हैं जो कि सफेद रंग की है और ऊपर की सीलिंग नजर आ रही है जो कि सफेद रंग की है कई सारे बेंच और चेयर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

जैसा कि देख पा रहे हैं तस्वीर में दिन का समय नजर आ रहा है चार बच्चियां दिखाई दे रहा है रेस लगा रही हैं।

नदी बहती हुई दिख रही है एक आदमी पत्थर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है जो सफेद रंग का ड्रेस पहना हुआ दिखाई दे रहा है।

नजर आ रहा है और यहां पर बैनर में लिखा हुआ है सफेद इंक से बाबा बिरयानी--